ये एक गांव का छोटा सा बस स्टैंड हो सकता है।

ये जो कहीं से दूर से बह कर के आया हुआ है।

छोटा सा बगीचा जैसे हमारे सामने दिख रहे हैं।

और छोटे छोटे मंदिर जो है नदी के किनारे में है।

घर की स्थिति बहोत ही खूबसूरत और साफ लग रही हैं पर्दे वगैरा जो बहोत अच्छे लग रहे हैं।

जो काफी खूबसूरत लग रहा है यहां पे यह बच्चों का काम है। बच्चे ही यह सब करते हैं।

जिसमें बच्चे खेलते है यहाँ बहोत सारी कार बाईकें वगैरा छोटा-छोटा रहता है रिमोट वाला जिसमें बैठ कर के बच्चे चलाते है।

यहां दो तलाब जैसा हमे नजर पड़ रहा है।

यह एक डेली नीड्स का सामान यहां पे मिलता है काफी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है।

काफी सुंदर यहां का माहौल लग रहा है शाम का समय है।

वो मिल जाती है दीवालों पे बहुत अच्छा सा है ये लिखा गया है अक्षय सुपरमार्ट ।

पार्किंग की जो व्यवस्था हैं बहोत अच्छी और बड़ी मात्रा में हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है काफी बढ़िया लग रहा है सामने--

कुछ कार्यक्रम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे है अंदर में जो बहुत सारे पंखे और लाइट लगे हुए है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं।

बहोत ही खूबसूरत लग रहा है और यहां पे जो जिम इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं।

इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी है और अभी रात का समय है तो लाइटिंग की वजह से काफी बढ़िया लग रहा है।

यह एक मछली मार्केट है जो काफी बढ़िया लग रहा है।

ये अपना जो बॉडी है दर्पण में देख करके फोटो खिंचवा रहा है।

यह एक एच_पी का पेट्रोल पंप है यहां पे काफी भीड़ लगी हुई है पेट्रोल --

यहां बहोत सारी पार्किंग वगैरा है और--

यह एक फलों का दुकान है यहाँ पे जो है बहोत सारे फल वगैरा बिक रहे हैं।